जिसमें बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक डस्टबिन भी--

उसके पीछे कुछ औरतें पूजा कर रही हैं और कुछ औरतें खड़ी हुई हैं।

देख सकते हैं कि यह किसी ऑफिस के बाहर का फोटो है जिसमें बहुत सारे--

पेंट की बाल्टियां रखी हुई हैं और कुछ नल भी रखे हुए हैं।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

और इसमें एक कांच की मेज रखी हुई है और एक कुर्सी--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

यह एक औरत अ फोटो है।

इस स्कूल का दरवाजा अभी बंद दिखाई दे रहा है।

जहां पर कुछ पर्दे लगे हुए हैं और--

कुछ लाइटे भी लगी हुई हैं और बैठने लिए--

फोटो है इसमें कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है जो अपने गा--

और इन बच्चों के पीछे कुछ सुंदर से गमले--